ये तस्वीर एक कारखाने की है।

स सड़क के किनारे बहुत सारी दुकानें हैं।

और बहोत सारे लोग भी हैं।

ये बाइक और स्कूटरों की दुकान--

उस पर बाइक के बारे में लिखा हुआ है।

और यहां कुर्सियां और टेबल भी--

रेस्टोरेंट दिख रहा है बहोत सारी लाइटें और लडिया चस रही है।

ये तस्वीर एक लैब की है यहां बहोत बड़ा ये लैब है।

यहां पर आदमी भी खड़े हुए--

यहां दो शेर भी बनाए गए हैं।

यहा पर एक पारक है जिसमे घास है और बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

कई बाइके भी खड़ी है और पानी के फुव्वारे भी चल रहे हैं।

यहां पर एक बाइक और एक कार खड़ी है।

ये तस्वीर एक बहोत बड़े हॉल की है इसमें पंखा चल रहा है।

बहोत सारे पंखे भी चल रहे हैं।

वो एक हॉस्पिटल हो सकता है।

ये एक बगीचे का फोटो है।

ये तस्वीर एक हॉल की लग रही है।